यह बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं और मोटर साइकिल और एक स्कूटी भी है जो कि लगी हुई है। यहाँ पर डीजल और पेट्रोल मिलता है।

उसके टी-शर्ट जो डिज़ाइनर है वो ब्लैक एंड येलो है उसने स्लीपर्स भी पहना हुआ --

और यहां पर डीजल पेट्रोल मिलते हैं इसलिए बहुत सारी गाड़ियां आके लगी हें जो उनमें भरायेंगे।

यहाँ पर थोड़े से हरे पेड़ भी नज़र आ रहे है।

यह एक रेलवे स्टेशन है। यहां पर ट्रेन है जो खिड़की नजर आ रही है ट्रेन की जो खड़ी है अभी यह स्टेशन कुछ ख़ास तो नहीं है पर यहाँ पर हरे रंग के फर्श दिख रहे हैं।

और यहां पर पेड़ है जो ब्लैक है समाने बिजली का खम्भा है और एक खम्भा और है उसमे लाइट्स लगी हुई हैं। कुछ लोग भी नजर आ रहे है यहां --

और यहाँ पर सीढ़िया भी हैं और यहाँ पर एक गाड़ी नजर आ --

ये एक बहुत ही खुबसूरत सा इलाका लग रहा है। यहां पर फील्ड है कुछ लोग भी हैं और यहां पर चर चक्का भी है।

जो कि व्हाइट और ब्लैक भी है। यहां पर एक खम्भा है जिसमें चारो तरफ लाइट्स लगी हुई हैं।

यहां नदी के किनारे दो लोग हैं जो बोरे में कुछ भर रहे हैं। शायद यह बालू को भर कर नदी के किनारे बहुत सारे बालू को बोरे में भर कर जमा कर रहा है ताकि नदी का पानी इस तरफ न आ सके ।

यह नदी बहुत दूर-दूर तक बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। दूर में हरे-हरे पेड़ भी नजर आ रहे --